अ बहुत सारे आदमी हैं बहुत सारी लेडीज़ हैं बहुत सारे जेन्स हैं।

का जो फ्रॉक है ना रेड है बहुत ही मस्त लग रहा है पीछे का बैक ग्राउंड भी क्या फोटो का सीन है।

यह एक मॉल है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और बहुत ही शानदार काउंटर है।